और बीच में एक पोल खड़ा हुआ है।

और उसमें कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और नीचे पार्किंग कार्स खड़ी हुई हैं।

सामने एक प्लेट दिखाई दे रही है।

उसमें कुछ टेबल्स और चेयर्स डली हुई दिखाई दे रही--

उनके सामने एक हाईवे दिखाई।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही --

उसमें कुछ समान लटका हुआ है साइड मे कुछ आदमी खडे हुए--